जनरल स्टोर का पटाखों का सामना रखा है।

और एक रैकसील मतलब ब्रेकसील रखी हुई है। अरमारी रखी हुई है।

जैसा मै यहाँ देख पा रही हूँ यह एक केक है।

यहां पर ग्ले ग्रे कलर से --

सफ़ेद कलर की फर्श है। ग्रीन कलर की यहाँ पर घास है जो की मैदान है।

जैसा मैं देख पा रही हूं यहां पर एक सैलून है जोकि छोटा बच्चा खड़ा हुआ है। यह अ सैलून का कोट पहने हुए है।

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यह एक मैंदान है जो कि भूरा काला और ग्रीन कलर से इसका शेड मतलब पड़ रहा है।

कप में रखा हुआ है। शुगर पाउडर रखा हुआ है। ट्रे रखी हुई है। उस पे कॉफ़ी रखी है। ब्राउन कलर की एक मेज है और एक चाभी रखी है।

कुछ पेड़ दल दल में डले हुये हैं। यहाँ पर हरे और ग्रे कलर के पेड़ है जो की टहनियों से नीचे गिर रहे हैं।

जैसा कि मैं देख पा रही हूं यह एक रूम है जहां पर काले कलर की मेज रखी हुई है। बहोत सारी मशीनें रखी हुई हैं।

जैसा की मैं देख पा रही हूँ ये एक पार्क है जहाँ पर यह सफ़ेद कलर की एक इमारत भी खड़ी हुई है।

और इसकी रेलिंग हरे कलर की है। ग्रे कलर से इसकी पट्टियों का रंग है।